और बहुत सारे कुर्सी भी रखे हुए हैं कुर्सी में कपड़ा भी पेन्हाया हुआ हैं।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

खिड़की दिखाई दे रही है जिस पर शीशा लगाया हुआ है और एक बहुत बड़ा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लिखा हुआ भी है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग के दीवार में हरे कलर का पेंट भी किया गया है और बिल्डिंग के दीवार में टाइल्स भी लगाया हुआ है।

और सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है सीढ़ी में स्टील का रेलिंग भी लगाया हुआ है।

और बिल्डिंग में खिड़की भी दिखाई दे रहा है जिसपे शीशा लगाया हुआ है।

और रस्सी भी दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति जो की वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और--

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट लगाए हुए हैं जो की लाल कलर के रेड कलर के ब्लू कलर की भी हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो की रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

पत्थर भी दिखाई दे रहा है सभी मकईयों को जमीन में रखा हुआ है।

और पेड़ भी दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और डिब्बा में भी पैक करके रखा गया है यहां पे आसमानी कलर का व्हाइट कलर का रेड कलर का डिब्बा भी रखा हुआ है।

बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर रंग बिरंग का चित्र बनाए हुए है।

यहां पे पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसको पेंट किया गया है और बोर्ड टांगा हुआ है।

लाइट भी जल रहा है पीछे दीवार में बहुत सारा पोस्टर भी सटा हुआ है।

दिवाल में वाइट कलर का पेंट भी किया गया है और पर्दा भी लगाया हुआ है।

पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके रखा गया है चावल पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक पार्क का दृसय है यहां पर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है ।

स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और एक छाता भी बनाया हुआ है जो कि पीला कलर का है।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

बहोत साड़ी गाड़ियों भी लगाई हुई है और बहुत सारे पेड़ की दिखाई दे रहे हैं जो की हरे कलर के हैं और रोड भी दिखाई दे रहा है।